बिना कोई शिकायत का । ये अभिराज फ्यूल पंप है।

यहाँ पे एक कल है। यहाँ पे पाथ भी बहुत अच्छा बना है। एक बोर्ड भी लगा हुआ है । यहाँ पे क्या बैकग्राउंड है। घर भी है साइड मे कोचिंग भी है।

ये सरस्वती माँ है। ये देखिए कितना अच्छा कला है जो भी बनाया है इसको कितनी मेहनत से बनाया है। क्या कला है इसका क्या पेंटिंग है कितना सारा प्रसाद चढ़ाए हुए है यहाँ पे ढेर सारा प्रसाद चढ़ाए हुए है।

ये कॉफी सेंटर है। यहां पे इतना अच्छा कॉफी मिलते हैं ना आप कॉफी एक बार पिजिऐगा तो बार बार आइऐगा। मेरा कहने का मतलब है--

यहां पे इतना अच्छा कॉफी बनते हैं ना । आप एक बार पीलीजिएगा ना यहां कॉफी पीने आपका घर नजदीक हो या दूर हो आप दो रोज या तीन रोज पे पक्का एक बार जरूर से जरूर आप आइऐगा कॉफी पीने।

ऊपर ऐलवेस्टर दिया हुआ है। इसका टीन देखिए इसके साइड मे भी गाछ वृक्ष भी है। क्या बनाए है घर ये।

ये मॉल है होटल रूम पर पर। यहां पे पिज्जा बर्गर चौमीन छोला केक वेक सब चीज मिलता है लिट्टी। यहां पर सब चीज उपलब्ध हैं। सच यहां के मिठाई खाने मे लग रहा है बहुत अच्छा मिठाई बनाते है यहां पे।

ये हैं सिनेमा हॉल । यहां आप देखिए कितना अच्छा दिखने मे लगा रहा हैं। घर भी बना हुआ हैं। घर का देखिए ग्रिल क्या लगा हुआ हैं। सीढ़ी देखिए इसका इसका लाइट देखिए।